ऊपर तीन व्यक्ति बैठे हैं और एक नीचे व्यक्ति बैठा है उसका चेहरा ब्लर है।

इस तस्वीर में काफी पुरुष खड़े हुए हैं जिनका कपड़ा रंगों से भींगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक पत्थरों के बीच में बने छोटी सी नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक क्रिकेट ग्राउंड का दृश्य है इस तस्वीर में काफी लोग बैठे नजर आ रहे हैं जो कि क्रिकेट देख रहे हैं।

यहां पर टैक्टर दिखाई दे रहा है और ऊपर हमे आसमान और नीचे काफी पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे है।

इस तस्वीर में हमें मारुति सुजुकी का कंपनी दिखाई दे रहा है जोकि यह बहुत ही बड़ा शोरूम है।

तस्वीर में हमें फूल मंडी का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारे फूल मिलते हैं।

इस तस्वीर में हमें ट्राली का दृश्य दिखाई दे रहा है जोकि यह ट्राली लाल और नीले कलर में है।

टली के पीछे में हरी भारी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और सूर्य के किरण भी आ रही है।

ऊपर हमें सब्जियां रखी हुई नजर आ रही है और यह एक कटाप है।

यह एक सरकारी आवास है जिसके पीछे बहुत ही भीड़ है पुरुषों की।

यह पूरा स्टेशन सफेद लाल कलर मे है ऊपर टीने की छतरी लगी हुई है।